बड़ा पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है पेट्रोल भरने वाली मशीन नजर आ रही है जो कि सफेद कलर की नजर आ रही है और हमें यहां पर बहुत सारे लोग पेट्रोल भरते हुए दिखाई दे रहे है और हमें यहां पर इस पेट्रोल की मशीन पर रखा बोर्ड का कलर हमें छत का कलर हमें यहां पर ऑरेंज दिखाई दे रहा है और --

यहां पर नीले कलर की शर्ट पहनी दिखाई दे रही है और हमे यहां पर बहुत सारी बाइके खड़ी दिखाई दे रही है कुछ बाइको का कलर हमें यहां पर काला दिखाई दे रहा है कुछ बाइकों का कलर हमें यहां पर नीला नजर आ रहा है कुछ बाइको का कलर हमें यहां पर लाल दिखाई दे रहा है जो की देखने में बहुत अच्छा लग रहा है।

यहाँ पर एक बहोत ही बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा हैं ग्राउंड में हमें एक गो गोल बना हुआ नजर आ रहा हैं जिसमें की बहोत सारे लोग फुटबॉल खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके पिंक कलर की टी-शर्ट पहने हुए दिखाई दे रही हैं और --

बहुत ही बड़ी बिल होटल दिखाई दे रही हैं जिसमे की हमें एक बहुत लम्बी गली दिखाई दे रही है | गली में हमे बहुत सारी लाइटे लगी हुए दिखाई दे रही है लाइट का कलर में यहाँ पे सफ़ेद दिखाई दे रहा हैं और हमे यहाँ पर बहुत सारे पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे पर्दे के कलर हमे हरा दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ हमें यहाँ काँच की बनी --